एक आदमी जिम करते हुए दिखाई दे रहा है।

एक महिला मछली बेच रही है।

या किसी बर्थडे फंक्शन का तस्वीर लग रहा है।

एक घड़ी लगा हुआ है एक पंख लगा हुआ है।

कई सारे महिलाएं और पुरुष एक जुट हुए हैं।

बिल्डिंग में कई रंग बिरंगी लाइट लगे हुए हैं।

टीन के बगल में कई सारे ठेला लगे हुए हैं।

और दो बड़ा बड़ा लाइट वेपर जल रहा है उसका फॉक्स भी इधर आ रहा है।

पौधा रखे हुए हैं टब में बाल्टी में --

यहां पर आलू रखे हुए हैं दाल रखे हुए हैं।

यहाँ पर कई सारे लाल कलर के कुर्सियां भी रखे हुए हैं और कलर के--

वहां पर कई सारे लकड़ी काटे हुए रखे हुए भी हैं।

जब सूरज उग रहा उस समय का टाइम है।

कई सारे बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फूल का दुकान है जहां पर कई तरह तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं।